एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दी रहा हैं और ये एक स्कूल हैं।

लेटर का एक वर्ड लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर यहां पे सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है।

ये एक बड़ा सा प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और यहां पे जिम के ये बहोत सारे मशीन दिखाई दे रहे है।

बड़े बड़े पेड़ है यहां पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां बहोत सारे हरियाली है।

यहां पे सूखे पेड़ दिखाएं दे रहे हैं यहां पे मिट्टी पत्थर दिखाई दे रहे हैं आस पास बहोत सारे--

यहा पे दिखाई दे रहे है आसमान बादल दिखाई दे रहे है यहा पे--

यहां पे वॉल फ्रेम्स है यहां ए_सी है छोटे छोटे लाइट्स हैं।

यहाँ पे सड़क है सड़क पे ऑटो है आस पास हरियाली है घास है स्ट्रिट लाईट हैं बड़े बड़े खम्बे हैं स्ट्रिट लाईट ओन हैं।

यहां पे एक ऑटो है ऑटो के बाज़ू एक गाड़ी है यहां पे एक लड़का है और यहां पे--

यह जिम है यहां जिम के अंदर कुछ लड़के वर्कआउट कर रहे हैं।

और यहां पे सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है वो जिम कर रहा है और यहां पे--

यहां पे रेड कलर का कारपेट है ब्लू कलर का कारपेट है और यहां पे बहुत सारे रंग बिरंगे लाइट दिखाई दे रहे हैं।

यहा पे तिन लडकिया दिखाई दे रही है स्टेज के उपर और वो तिन लडकिया यहा पे डांस कर रही है।

और वो बहोत सारे अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहने हैं लहंगा पहने और यहां पे--